टेंपू में आदमी बैठा हुआ है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

मास्क लगाया है टी-शर्ट पहने है जीन्स पहने है।

बेग लगा कर तैयार है ।

एक जेंट्स हैं कुर्सी पर बैठल है।

है लिफ्ट है।

नारियल का पेड़ है।